यह एक चाय वाले की दुकान है और यहां पर चाय वाले का मुंह ब्लर कर रखा है और--

इसने अपने मुंह पर माक्स लगा रखा है और यहां पर ऊपर पन्नी पड़ी--

यहां पर यह स्टेज है और यहां पर हरे मैट भी बिछे हुए है।

इनकी डेकोरेशन भी कर रखी है पीछे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

है यहां पर कुछ लिखा हुआ है जो विजय है।

यहां पर बाहर थमले पे किसी चीज का पोस्टर भी लगा --

और यहां पर कुछ नीचे लाइट भी लगी हुइ है यहां पर--

यहां पर बहुत सारी औरत और आदमी भी खड़े हुए हैं और यहां पर--

यहां पर किसी चीज का काम चल रहा है और यहां पर --

यह शादी में दूल्हा और दुल्हन की स्टेज है और यहां पर तीन स्टेजे पड़ी हुईं हैं।

और यहां पर एक चीज को ब्लर भी कर रखा है।

और नीचे यहां पर बहोत सारी टाइलें भी लगी हुई है।

यह एक शादी में टेंट का फोटो है।

एक दो विंडो भी लगी हुई है और यहां पर--

बाहर गाड़ी भी रखी हुई है और यहां पर--

चेयर भी पड़ी हुई है जो स्टील की है।

और यहां पर एक टम्पू भी खड़ा हुआ है।

अउर टेंपो के पीछे कुछ लिख भी रहा है अउर यहां पर बैंक का--

और यहां पर एक बेंच भी रखी हुई है और यहां पर बोहोत सारी मशीनें भी रखी हुई है।

ब्लर कर रखा है और यहां पर गनेश जी की भी मूर्ति रखी हुई है।

यहां पर कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं और यहां पर कुछ पीछे मकान भी है।

वहां पर एक लड़के का पोस्टर में मुंह ब्लर भी कर रखा है।